और यहां पे भीड़ लगी हुई है टिकट खरीदने के लिए यहां पर बगल में एक और गेट लगाया है उसके ऊपर नीचे सीढ़िया भी लगी हुई है यह किसी का घर लग रहा है कुछ भी हो सकता है यह पर चैनल भी लगा हुआ है।

वो मुझे पता ही नहीं है की ये है क्या चीज़ ये मुझे लगता है की स्विमिंग में जो रेसर के लिए रेहता है न की ऊपर से खिसकने के लिए स्विमिंग पूल में गिरे ये मेरे को वही लगता है यहाँ पे बहुत ऊँचा है।